यहाँ मोर है खड़े खड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा बहुत ही पेड़-पौधे भी हैं।

और और बहुत अच्छा --